इस फोटो में सामने एक दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर लिखा है फोर जी_एम_डी आइडिया --

गार्डन दिखाई दे रहा है यहां पर काफी सारे फूल लगे हुए हैं।